यहां पे बहोत बड़ा बड़ा सा चट्टान है।

उसके पीछे साइड एक बाउंड्री है।

यहां पे डोर लॉकिंग सिस्टम भी रखा हुआ है।

रखा हुआ है बांध के मूत्री।

नीचे के साइड में गड्ढा किया हुआ है।

यहां पे एक तस्वीर है।

इसका कलर ऑरेंज टाइप का है सामने बहुत बड़ी सी विंड शील्ड है।

यहां पे बहुत सारे बेंचेज लगे हैं।

एक वॉल येलो है और नीचे से नीला कलर का है।

इसने बहुत सारी मिट्टी निकाल दी है।

इस पे बहोत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

इसमें हरे हरे लाइट भी जल रहे हैं।

और बीच बीच में बड़े बड़े से एल_ई_डी जल रहे हैं।

एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई है।

सामने दीवाल के रेलिंग है।

यहां पे सामने एक बिल्डिंग बना हुआ है।

इसके नीचे पूरा हार्डवेयर का शॉप है।

जो कि लकड़ी के बने हुए हैं।

जो कि हरे भरे रंग के हैं।

पर बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं।

जीनके ऊपर नीले रंग का कवर चढ़ाया हुआ है।

गेंदे के फूल की माला टांगे हुए हैं।

और गार्निशिंग की हुई है।

उसके नीचे एक प्लेट है वाइट कलर का।

और एक चम्मच भी रखा हुआ है।

और उसके नीचे एक टेबल है।

और वाइट कलर का टोपी पहना है।

एक रॉड भी रखा हुआ है।